एक व्यक्ति बैठा हुआ है पास में। पाइप डला हुआ है टैंकर के पास में।

अब ये झांकी है आगे कुछ लोग फोटो निकलाते हुए झांकी में पंडित जी और कुछ लोग फोटो निकलाते हुए दिख रहे हैं।

डांस फ्लोर बन रहा है। डांस फ्लोर पर दो लड़के खड़े हुए हैं।

बना हुआ दिख रहा है स्टेज जैसा ही मंदिर के जैसा दिखाई दे रहा है सामने बड़ा सा बना हुआ।

ओर ये एक लड़का खड़ा हुआ पेसे गिनता हुआ दिखाई दे रा --

यहाँ पर बड़े-बड़े कांच लगे दिखाई दे रहे हैं। चैर लगी हुई है।

ये सामने एक विद्यालय दिखाई दे रहा है महाविद्यालय --

और ये गेट दिख रहा है बड़ा सा जाली वाला गेट लगा हुआ है।

अ पेड़ लगे हुए हैं दोनों तरफ। गेट के बाहर सामने ग्राउंड दिख रहा है। ग्राउंड में कुछ कचरा डाला हुआ दिखाई दे रहा है।

और के पीछे यह घर दिखाई दे रहे हैं ये और ये नदी दिख रही है। हरे हरे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बड़ी सी एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है।

शोकेस में सामान जमा हुआ है और नीचे कटियों में सामान रखा हुआ दिख रहा है।

यह बच्चे बैठे हैं बाहर स्कूल में क्लास के बाहर बच्चे बेठे दिख रहे हैं ये।

अस्पताल लिखा हुआ है ये और बड़ा सा सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है।

कुछ लोग आते -जाते दिखाई दे रहे है बाहर की तरफ --

ऊपर पुल दिख रहा है सामने बना हुआ है बड़ा सा और नदी में कुछ स्नान करते हुए --

दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग कुछ महिला और कुछ पुरुष स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं नहाते हुए नदी में बड़ी सी नदी दिख रही है।

ये स्टेशनरी की दुकान दिख रही है। स्टेशनरी की दुकान है ये।

घर सा बना दिख रहा है। साइड में टीन शेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये --

ये चर्च दिख रहा। चर्च में कुछ प्रोग्राम होते हुए दिखाई दे रहा है।

ये बड़े से ग्राउंड में ये सामने ये गोल --

एच.डी.एफ.सी बैंक दिख रही है ये चैनल गेट दिख रहा है साइड में।

ये कुछ लोग खड़े हुए हैं बाहर नीचे की तरफ कुछ लेडीसे खड़ी हुई हैं सीढ़ी के नीचे --

काले कलर से विष्णु भगवान की ये मूर्ति बनी हुई है ऊपर शेषनाग दिखाई दे रहा है ये एक मंदिर दिख रहा है।

पौधे रखे हुए हैं ये ये जमे हुए हैं सब उसमें।

ये स्टेज दिख रा । ये सीढ़ियाँ हैं ये।

पीछे सब लोग बैठे हुए हैं स्टेज पर ये साइड में ये उउ --

नीचे खड़ी है यह कुछ बोल रही है ये। बच्चे दिखाई दे रहे हैं स्टेज पर ही। स्टेज प्रोग्राम हो रहा है बच्चों का ये।

साइड में चेयर रखी हुई है बैठने के लिए और ये गाडिया खड़ी हुई है यहाँ फोर व्हीलर ।